साइकल में एक आदमी है।

बहुत सारे लोग है।

की मूर्ति हैं जिसमें येलो कलर --

तो जैसा की आप--

एक बेड रूम है जहां पर--

और यहां पर बहोत सुंदर डिजाइन --

तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर--

की मूर्ति रखी गई है।

ये है एक वैष्णो ढाबा यहां पर--

एक फंक्शन चल रहा है वहां पर।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

जो की बहोत सुंदर है।